इ एगो बजार बा एमे बहोत आदमी सब्जी बेचता यहा एगो आदमी सब्जी बेचता।

एकगो खरगोश के बनलबा एकगो आदमी एकगो मनुष्य के बनेलवा एगो नाव भी बनल बा ईमे और सब के कलर हरा कलर के बा सब चीज़--

चिड़िया के बगल में एएगो कटोरी लागल बा जोनो जोन पिंक कलर के बा ।